यह एक पहाड़ का दृश्य है जहां पर कई सारे लोग पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं।

यह एक स्विमिंग पूल का दृश्य है जहां पर स्विमिंग पूल में ढेर सारे पानी भरे हुए हैं।

और यहा पर एक टेभल भी है जिसके ऊपर एक तौलिया और स्प्राइट बॉटल --

यहां पर मजदूर अपने सर पे बोड़ा उठाकर एक गाड़ी में लोड कर रहे हैं।

लकड़ी के सहारे गाड़ी पर चल रहे हैं और यहां पर सीलिंग में लकड़ी और अ करकट का यूस किया गया है।

और यहां से तार भी पास किया गया है और यहां पर जनता लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं।

यह एक दुकान का दृश्य है जहां पर ढेर सारे और अलग अलग डिजाइनों में बेसिन मौजूद है।

और उनके कलर कलर भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं और उसके जस्ट नीचे वे पेन भी दिखाई दे रहे हैं दीवाल में बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

और उ ढेर सारे खिड़कियां भी हैं खिड़कियां में लोहे और कांच का प्रयोग किया गया है।

यह एक स्कूल का दृश्य है इसके चारों ओर पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं और स्कूल के ऊपर में स्कूल का बैनर भी लगा हुआ है।

अनेक प्रकार के कपड़े दिखाई दे रहे हैं जोकि अलमारी में सजा कर रखे हुए हैं।